और साइड्स में नारियल का पेड़ हैं।

यह एक लड़का है जो आईने में हो के अपना सेल्फी खींच रहा है।

इसे टाइम देखने में यूज़ किया जाता है ओर इस टावर को बहोत सुंदर से सजाया गया है और बहोत सारी आदमी लड़कियाँ औरते हैं जो दुकानों में खड़ी है चल रही है।

और औरते सिर्फ इसमें हैं बोट में जो नाँव चलाने के लिए बैठी हुई हैं और पानी बहुत है नदी में।

और में बाइको में चढ़ा हुआ है आदमी।